जो की साइकिल की दुकान है यहाँ पे छोटे छोटे सेल बने हुए है जिसके अंदर बच्चों के तीन पहिया वाली साइकिल रखी हुई है।

एक बहुत ही बड़ा गार्डन है गार्डन के बीच में से जाने का रास्ता बना हुआ है याहा बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैजो गोलाकार मे कांटे हुए नज़र आ रहे है।

कुसरी रखी हुई नज़र आ रही है कुर्सी लगी हुई लकड़ी की कुर्सी हैऔर बाजू में एक हरे कलर का कूड़ेदान का डस्ट्बिन रखा गया है यहाँ बीच में से जाने के लिए रास्ता लगा हुआ है कर्ल खंबा दिख रहा है जिसमे लाइट लगी हुई है।

एक बहुत ही बड़ा गार्डन है गार्डन में ईटे लाल वाले ईटे का डिवाइडर बनाया गया हैऔर उसे डिजाइन बनाई गई है।

यहाँ पे मग्गा भी जग रखा है पानी पिने का बहुत सारी कुर्सी बाहर लगी हुई है और बोहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है जो बहुत ही प्यारे लग रहे है यहाँ पे खंबा लगा जिसमे लाइट लगी है यहाँ पे काफी लोगो की भीड ईकठा है जो--

और यहाँ पे लाल कलर के बहुत सारे कपड़े थैली मे बंद कर के रखे गए है यहाँ पे बहुत ही प्यारे-प्यारे कपड़े स्कूल के ड्रेस है।